और अ काले बादल है शायद बारिश के टाइम का फोटो है और जंगल भी बहुत घना दिख रहा है।

एक रेड कलर की बाइक है एक ब्लू कलर की है और एक ब्लैक कलर की है और एक शॉप के अंदर एक्टिवा खड़ी है सिल्वर कलर की--

और यहां पे बच्चे बैठे हैं बहोत सारे ए--

यहां पे सब टाइप के पेशेंट आते हैं।